खड़ी हैं ये सभी नई ऑटो मोबाइल है।

स्थान बना हुआ है। यह एक भैंस है।

यहाँ पर एक नाव के अंदर एक --

ए.सी. और जज की अलग-अलग चेयर नजर आ रही है।

स्कूल के बड़े होने के कारण यह है पार्किंग बड़ी बनाइए --

यह बिजली बोर्ड का प्लांट है। यह एक गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है।